एक लेडीज भी हरी साड़ी पेहनकर खड़ी है।

इस दुकान में ऐ_सी भी लगा है।

इसमें बहुत सारे कूलर लगे हैं।

यहां पर बहोत सारी फैसलिटी हैं।

आलीशान महल जैसा बना हुआ है।

हिरन बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

यह हमारे लिए बहोत ही गलत बात है हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए हरियाली रखनी चाहिए।

यहां पर एक रखा हुआ है।

बहोत ही सुंदर लग रहा है यहां एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह बहुत ही सुंदर पर्यावरण का हिस्सा है। यह एक स्टेडियम जैसा लग रहा है।

यह एक घर है जो अभी बन रहा है बाहर बहुत सारी टैल लगी हैं शायद इस घर में फर्श हो रहा है।

बहोत ही मेहनत से काम करते हैं।

इसके ऊपर एक बहोत ही अच्छा झूमर है।

पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।